ग्राउंड में पूरा कार पार्किंग एरिया है वाइट कलर की कार ब्लैक कलर की कार रेड कलर की कार --

सा साइड में पूरा स्टोंस हैं ग्रीन कलर की ग्रास है सैंड भी है।

एक रिवर है जहां पर फुल पानी है उसके साममे एक बंगलो है।

कच्ची रोड है नीचे पूरा वाटर है।

पार्किंग एरिया है जहां पर बहोत से पा कार पार्किंग है वाइट कलर की कार --

वाटर बोतल बिसलेरी का सौडा--

टेन बसेस है ब्लू कलर के पिंक कलर के--

कचोरी है चने हैं बूँदी हैं फली है।

साइड पे रोड हैं रोड पे लॉरी हैं कार हैं।

बेड है डोर है स्टील कलर का ब्राउन कलर के डोर्स हैं।